यह पांडे जी का दुकान है।

यह स्टेज है और यहा पर सब डांसर है जो की खुर्सि पे सामने मे बैठे है।

बहुत ही अच्छी स्टेज को सजाया गया है।

यहां पे बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं।

बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगे हैं यहां पे टावर भी लगे हुए हैं।

यह सैलून है यहां पे तीन कुर्सी लगे हुये हैं।

यह प्राइवेट स्कूल का चित्र है।

स्कूल के ऊपर में तीन झंडा भी लगे हुए--

यह रोड लाइट है यथा इसे शादी विवाह के फंक्शन में लगाए जाते है।

यह एक एच_डी_एफ_सी बैंक का दृश्य है।

यह होटल का दृश्य है यहाँ पर बहुत सारी चेयर्स और टेबुल रखे हुए हैं।

यह बिजली प्लांट हाउस है। यहां पर बिजली का बहुत बड़ा मीटर लगा हुआ है।